दो आदमी दिखाई दे रहे हैं जो एक नाव के कॉर्नर पर खड़े हुए हैं और सामने की तरफ हाथ करे हुए हैं। बगल में पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है। मंदिर के ऊपर छोटे छोटी प्रतिमाए बनी हुई दिखाई दे रही है। मंदिर के पीछे बादल दिखाई दे रहा है। कुछ आदमी अंदर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक आदमी बाहर की तरफ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक तरबू कुछ तरबूज रखे दिखाई दे रहे हैं कुछ संतरे दिखाई दे रहे हैं और एक ठेला दिखाई दे रहा है। सामने एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा --

मुझे एक खाली ग्राउंड दिखाई दे रहा है। ग्राउंड में कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने स्कूल का यूनिफॉर्म पहने हुए दिखाई दे रहे हैं।

मुझे कपड़े की एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमें बच्चों के अलग-अलग प्रकार के कपड़े दिखाई दे रहे हैं टी-शर्टस दिखाई दे रही हैं शॉर्ट्स दिखाई दे रहे हैं बनियान दिखाई दे रहे हैं।